यह एक बहोत बड़ी जिम है इसमें काफी सारे बैलून नजर आ रहे हैं और काफी सारी मशीने नजर आ रही है।

यह एक स्कूल है यहां पर काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

एक टीन का पोस्टर है और एक पेड़ खड़ा हुआ है और नीचे दो है।

काफी सारी बाहर गाड़ियां नजर आ रही है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इसमें काफी सारी मशीन नजर आ रही है।

बहुत सारी बॉल दिखाई दे रही है अलग अलग कलर की।

और एक लोहे का जाल दिख रहा है और पीछे कुछ बॉक्स पड़े हुए दिख रहे हैं।

कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है और कुछ तार ऊपर दिखाई दे--

पीछे वाले शीशे में कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लिखा हुआ है और पीछे हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है।